इस फोटो में हम एक थ्री वेड रास्ता देख सकते हैं।

कुछ पेड़ पौधे भी देखे जा सकते हैं।

इस फोटो के राइट साइड में हम रेड कलर के वॉल्स देख सकते हैं।

गूगल पे का क्यू_आर स्कैनर कोड भी देखा जा सकता है।

इसे जैसे मैनी पोको पैंट्स कॉर्न फ्लेक्स के पैकेट्स भी देखे जा सकते हैं।

इस फोटो में हमें एच ए इंटरप्राइजेज फर्निशिंग हाउस ए हाउस ऑफ फर्निशिंग आइटम्स एंड इंटीरियर लिखा हुआ है।

इस फोटो में हमें बहोत से फैन एंड लाइट भी देखे जा सकते हैं।

पीछे एक वाइट कलर की बिल्डिंग भी देखी जा सकती--

सामने एक व्यक्ति ग्रे कलर के ड्रेस में है वो भी हम इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं।

ग्रीन कलर के बिल्डिंग हम इस फोटो में देख सकते हैं।

इस फोटो की साइड में एक व्यक्ति भी देखा जा सकता है।

फोटो में जो व्यक्ति हैं उसने ब्लैक कलर का टी शर्ट एंड ब्लैक कलर के पजामास पहने हुए देखे जा सकते हैं।

इधर एक व्यक्ति व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

बहोत सारी लाइट्स भी हम इस फोटो में देख सकते हैं एंड फैन भी अवेलेबल है फोटो में।

रेड कलर के बैठने के लिए सीट भी हम इस फोटो में देख सकते हैं।

ये फोटो एक रूम से खींची गई है।

इस फोटो में हमे दो फैन देखे जा सकते हैं।

इस फोटो में हमें बहुत से स्कूटी और टूकटूक खड़े हुए देखे जा सकते हैं।

इस फोटो में हमें दो बड़े पत्थर देखे जा सकते हैं।